इमेज में छे लोग दिख रहे हैं जो पोज दे रहे हैं।

ये इमेज मे एक लाइन मे खड़े हुए ट्रक्स दिख रहे है।

टेबल पर और भी खाली प्लेट्स और पानी की बॉटेल रखी है।

रूम में व्हाइट चेयर्स और टेबल्स है जो एक के कैफे या वेटिंग एरिया जैसा लग रहा है।

इमेज मे एक बड़ा सा चर्च दिख रहा है।

साइड में एक और छोटा चर्च भी है।

और जमीन पर एयरप्लेन दिख रही है और बहोत सारे लोग है।